और अगल-बगल कुछ और खेत है और दूर में थोड़े घने हरे पत्तियां और कुछ पेड़ भी दिख रही है।

ये एक जिम सेंटर है जहां एक लड़का एक वॉल पे अपना दोनों पैर रख के हाथ के बल से कुछ व्यायाम कर रहे हैं और पीछे --

कुछ पिल्लर लगा हुआ है और यहां पे रास्ते बहुत सा लोग --

दिख रही है और एक-एक जगह पे बहोत घना पेड़ भी हैं और कुछ लोग वहाँ पे आना जाना कर रहे हैं।

एक्सरसाइज कर रहे हैं और नीचे कुछ वॉटर बॉटल्स भी रखे हुए हैं।

इनके माथे में एक हेड भी है और पॉकेट में एक इंची टेप और साइड में कुछ बोरा दिख रहा है।

यहाँ पे एक इंसान बैठ के बहुत सारा छोटा-छोटा मछलियां बेच रहा है और अगल-बगल --

बहोत सारा इंसान उसे खरीदने के लिए खड़ा है और वो अंकल की --

यहाँ पे एक चार्च का अंदर के दृश्य को दिखाया गया है। जहाँ पे बहोत सारा लोग खड़ा होके वहाँ फोटो ले रहे हैं।

और पीछे जिशु जी का एक मूर्ति लगा हुआ है और दीवार में बोहोत सारा --

और पीछे क साइड में बोहोत सारा घना पेड़ और बोहोत बड़ा-बड़ा पेड़ हमें यहाँ पे दिख रहे हैं।

इ सब लटकाया हुआ है और अंदर बहोत सारा बुक भी दिख रही है और साइड में भी इसका बहोत सारा बुक दिख रहा है।

और शॉप के ऊपर सीलिंग में बहोत साररी लाइट्स और एक फैन दिख रही है।

यहाँ पर एक रोड दिख रही है। जहां पर एक लोग पैदल जा रहे है और रोड के साइड में बहुत सारे --

बड़े-बड़े घर और घर के नीचे कुछ दुकान भी दिख रही है।

कॉंपी औन् नीचे कुछ मैंटस् भी रखे हुए हैं।

और बहोत सा खिलौने वाला कार भी यहाँ पे अवेलेबल है।

दोनों साइड में और सामने एक जगह पे स्टेज बनाया गया है। जहां कुछ लाइट --

इसके सामने एक ब्लैक कलर की फोर व्हीलर खड़ी हुई है और यहाँ पे ईटों से कुछ छोटे-छोटे बॉउन्ड्रीस के अंदर --

यहां पे एक स्कूल के अंदर के हिस्से को दिखायी जा रही है जहां पर बहोत सारे चेयर और बहोत सा --

गार्डन के अंदर बैठने की कुछ जगह कि गई है और अगल-बगल में बोहोत सारा पेड़ और एक हरियाली छाई हुई है।